नीले और लाल रंग के स्टैंड रखे हुए है और बहुत सारी झांलिया रखी हुई है झालियों का रंग काला और नीला दिख रहा है यहाँ कुछ काले रंग के डब्बे रखे हुए है यहाँ कुछ स्पेस दिख रहा है और सफेद रंग से पुता हुआ दिख रहा हैं और एक खम्बा ट्रॉफी जैसा दिख रहा हैं ।

एक वेयर हॉउस का दिख रहा है जिसका एक बड़ा सा गेट दिख रहा है गेट के एक ऊपर एक पोस्टर लगा हुआ है पोस्टर पिले और लाल रंग से लिखा हुआ हैं।

एक तार जाता हुआ भी दिख रहा हैं।

बहुत सारी लाइट लगी हुई दिख रही है और यहाँ पर जालियां दिख रही हैं जो पिले रंग सी दिख रही हैं कुछ ऊपर जालियां दिख रही सफ़ेद रंग की दिख रही हैं।

पत्थरो से बनी हुई दिख रही है कुछ लाइटे दिख रही है कुछ कथई रंग की दीवारे दिख रही है यहाँ पर कुछ बना हुआ रिसेप्शन टाइप में भी दिख रहा है यहाँ पर कुछ बड़ा सा गेट भी दिखाई दे रहा है।

कुछ लोग खड़े हुए है और तार भी चलते हुए दिख रहे है कुछ पिले रंग की लाइट भी लगी हुई हैं।

यह सफ़ेद कलर के कवर मे लपटा हुआ दिख रहा है पास मे कुछ बाल्टिया भी पड़ी हुई है नीले रंग की और कुछ लटके हुए फुल भी दिखाई दे रहे है।

यह दृश्य किसी फूलमाला की दुकान दिखाई दे रही है जहाँ पर दो व्यक्ति खड़े हैं यहाँ पर एक व्यक्ति फूल बेच रहा है एक व्यक्ति खड़ा हुआ है फूल बेचने वाले ज्यादातर व्यक्ति लाल कलर का शर्ट पहने हुए हैं यहाँ पर फूलों का रंग सफेद और पीला दिख रहा हैं उस--

यहाँ हरे भरे हरे भरे लाल रंग के सभी प्रकार के फूल दिख रहे हैं और लंबा स्पेस भी दिख रहा हैऔर यहाँ पे आने जाने का रास्ता भी दिख रहा हैं ।

कांच व फूलों क गुलदस्ते रंग-बिरंगे लाइन से बने हुए दिखाए दे रहे हैं सामने कुछ लोग खड़े हुए भी दिखाए दे रहे हैं।